यह खेतों के बीच मे एक तलाब है। यहाँ पे नाव है तीन-तीन नाव है नाव के अंदर पानी घुसा हुआ है।

यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी बहुत-बहुत टाइप का कार है गाड़ी है ट्रैक्टर है ऊपर मे रखा गया है न्यू न्यू प्लास्टिक से इसमे --

तस्वीर को देख कर हम यह कह सकते हैं यहाँ पर कुछ आदमी कैंपिंग करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यह एक जंगल का इलाका है यहाँ पर काफी बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

तीन डब्बों को एक पारदर्शी शीशे के अंदर बंद करके रखा गया है।

कुछ लोग क्रिकेट खेल रहें हैं कुछ लोग फुटबॉल खेल रहें हैं यह मैदान बहुत ही ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है और सामने में एक बहुत बड़ा टावर भी दिखाई दे रहा है।